यहां एक सड़क बनी हुई है।

सड़क के सामने एक बिल्डिंग बनी है यह एक सफेद रंग की है।

यहां पानी की बॉटल्स भी मिलती है।

यहां लकड़ी का फर्नीचर है यहां काउंटर येलो कलर का है।

यहां एक व्हाइट बोर्ड लगा है यहां फर्श पर गद्दा बिछा है।